जो ऊँची इमारत बनाई गई है ये चौकोर आकार में है।

इस तस्वीर में हमें एक बहुत बड़ा परिसर नजर आ रहा है इस परिसर में टेंट लगाया गया है।

इमारात के ठीक बाहर एक सफ़ेद रंग की मारुती सुजुकी कार खड़ी हुई है।

जहाँ एक स्मारक स्थल नजर आ रहा है इस स्मारक स्थल को बहुत ही सुंन्दर बनाया गया है।

जो इस कार का रंग है वो सफ़ेद दिखाई पड़ रहा है इस कार का नंबर प्लेट पीले रंग का है।